और यहाँ पे हरा कलर का कुछ फेंका हुआ है। नदी --

अंग्रेजी शब्द में लिखा हुआ है और यहाँ पे एक बहुत --

मटकी खरीद रहे हैं यहाँ पे तीन पेड़ दिखाए दे रहे हैं तीनो मैं चढ़ा हुवा हैं और बादल सफ़ेद हैं।

और यहाँ पे पानी अ पानी में कुछ-कुछ गिरे हुए हैं।

बिल्डिंग है मैदान मैं छोटे छोटे पौधे भी लगाए हुए हैं | यहाँ पे एक झूला जैसा कुछ बनाया हुआ है।

यहाँ पे एक हरे रंग का बड़ा मैदान है। मैदान में बहोत सारे कचरे हैं।